यहां पे काफी सारी औरतें बैठी हुई हैं।

और यहां पे कुछ प्लास्टिक के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

लेकिन इसमें एक चैनल गेट भी लगा हुआ है और इस घर के बाहर--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

और यहां पर मुझे कोई एक नदी जैसा या पानी दिख रहा है।

स्टेशन में पीले कलर का कलर लगा हुआ है।

जो कि इस मोबाइल शॉप में मुझे काफी सारे फोन रखे हुए दिख रहे हैं।

और यहां पर सामने की तरफ मुझे एम_आई की ब्रांडिंग भी दिख रही है।

यहां पर एक बच्ची फल खा रही है शायद--

मुझे यह फोटो कोई क्लासरूम का लग रहा है।

और साथ ही साथ मुझे ये यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिसमें एक्स_आई_आई यानी ट्वेल्थ कॉमर्स लिखा हुआ है।

और यहां आस पास के एरिया में--

और यहां पर सामने की तरफ एक डीलक्स शौचालय भी बना हुआ है।

और यहां पर साइड दीवाल पे--

यह फोटो मुझे कोई एक बिल्डिंग का लग रहा है।

इस फोटो में मुझे सामने की तरफ एक--

और इस बोट के नीचे ही एक काले कलर का गेट भी लगा हुआ है।

काफी पेड़-पौधे जैसे लगे हुए है।

और साथ ही साथ यहां पे कुछ लोहे के पाइप भी लगे हुए हैं।